यहाँ पर एक अ स्टोर दिख रहा है इस स्टोर का नाम है कुलदीप स्टोर और यहाँ पे कुछ समान वगैरा रखा हुआ दिख रहा बहोत सारा अंदर भी है बहोत सारा ।